सामने से गेट दिखाई दे रहा है अगल-बगल दीवाल दिखाई दे रहा है।

नीचे छोटे छोटे घांस दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है।

आदमी खरा हुआ दिखाई दे रहा है।

अगल बगल सब कपड़ा दिख रहा है।

एक तकिया दिख रहा है टेबुल दिख रहा है।

आदमी दिख रहा है।

तार दिख रहा है अगल बगल घर दिख रहा--

इस तस्वीर में घर दिख रहा है जमीन दिख रहा है लाल गोल घर दिख रहा है ऊपर --

घड़ी दिख रहा है फोटो दिख रहा है।

दो तीन आदमी दिखाई दे रहा है।

सामने छोटा घर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा--

अगल बगल खिरकी दिखाई दे रहा है।

अगल बगल पैर पौधा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दो पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।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

पौधा दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।

सामने एक घड़ दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घर दिखाई दे रहा--

तीन चार आसमान तीन चार बॉल दिखाई दे रहा है।

एक आदमी फोन लिवा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर माला के झूमर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है दो तीन पिलर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घड़ दिखाई दे रहा है।

सामने गेट दिखाई दे रहा है।

देवाल पर कुछ सिटी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में घड़ दिखाई दे रहा --

सामने खिरकी दिखाई दे रहा है।

कुछ समानें नीचे दिखाई दे रहा है।

दो तीन टेबुल दिखाई दे रहा है।

उजला मकान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।

ऊपरघांस दिखाई दे रहा है।

दो तीन बैलून दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है।

टेबल पर उजला गिलास दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है बीच में रोड दिख रहा है।

घर के ऊपर ढेर सारे आदमी दिख रहे हैं।

घर दिख रहा है दु चार शीशा दिख रहा है।

खेला दिख रहा है अगल बगल ।

बैंक ऑफ इंडिया पोस्टर दिख रहा है।

डाइस दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

पर वो वाइट पुट्टी दिख रहा है अगल-बगल सामान दिख रहा--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

पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

टौली दिख रहा है एक आदमी खरा दिख रहा है।

बालें डाल बाढ़ही बना रहा--

ऐसे ही दिख रहा है --

कुर्सी दिख रहा है अनमारी दिख रहा है।

क्या पुट्टी वाइट दिख रहा है सामने गेट दिख रहा है।

सामने ब्राउन गेट दिख रहा है।

लाइट दिख रहा है नीचे जमीन--

ऊपर पंखा दिख रहा है दो बॉल दिख रहा है तीन-चार बैग दिख रहा है।

कैनरा बैंक का पोस्टर दिख रहा है।

अगल बगल ढेर सारे पेर पौधा दिख रहा है घास दिख रहा है।